यह एक बड़ा सा ईस्टेज दिखाई दे रहा है।

एक बस मे बहुत सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। और र पास मे रखे हुए बस मे एक आदमी बैठा हुआ है जो पानी पी रहा है।

मस्जिद के पास मे एक घर दिखाई दे रहा है। घर मे एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

किला के बाहर बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें हल्की-हल्की घास दिखाई दे रही है।

यह एक रोड दिखाई दे रहा है।

यह एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है।

रोड के सामने बहुत सारे मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे है और एक मकान भी दिखाई दे रहा है जिसमें --

ट्रक रखा हुआ है जिसमे बहुत सारी लकड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है मकान में सीढ़िया दिखाई दे रही है।